ये एक रेसॉर्ट या होटल या किसी घर के अ टॉप फ्लोर का छत के ऊपर एक गार्डन बना हुआ है।

ये एक नदी का फोटो नजर आ रहा है जिसको ऊपर एक बांध या डैम बना हुआ है और जिसमें से पानी निकल के आ पासिंग हो रहा है।

लोग एक दूसरे की जगह पर जाते हैं।

ये एक लकड़ी का बना हुआ हैं एक स्टैचू हैं जिसमे कुछ बहुत सारे--

जो की एक ड्राइवर चला रहा है और कुछ घर नजर आ रहे हैं आसपास और कुछ रोड के साइड साइक में कुछ जो सीन है वह देख रहे हैं इसमें --

ये एक कोई सरकारी बिल्डिंग है उसका नज़ारा है जिसके आगे जोकि हरा है और जिसके बगल में पेड़ सब लगे हुए हैं बिल्डिंग के आगे बिजली का तार है।

यह किसी इंसान के घर के मैन गेट का फोटो है जो कि न्यौली कंस्ट्रक्शन है।

जो की अब सामने एक बिल्डिंग है| एक मोबाईल टॉवर भी दिख रहा है।

यह यात्री अपने सुविधा के हिसाब से यहां आ करके अपने जहां-जहां जाते है वहां वहां के लिए बस पकड़ते है।

ये सामने दिख रहा फोटो में एक रोड नजर आ रही है जिसके बगल में एक फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री हो सकती है और इस रोड में दो व्यक्ति चल रहे हैं।

तालाब का फोटो है जिसके आसपास हरे-भरे काफी बड़े-बड़े घास लगे हुए हैं।

और तालाब के चारों ओर लगता है जैसे कुछ घर बने हुए हैं जिसमें लोग रहते हो।

यह एक तालाब का सीन नजर आ रहा है जिसके चारों ओर काफी अच्छी प्लेटफार्म बनी हुई है जो की सीमेंटेड है।

दुकान पूरा रेक से भरा हुआ है और रेक के अंदर में पूरा समान है।